यहा पर एक हॉस्पिटल है हॉस्पिटल में बहुत से बेड लगे हुए है।

यहाँ पर एक ऑफिस है और ऑफिस में बोहोत से केबिन बने हुए है एक केबिन में एक टेबल है जिस पर --

कुछ कैबिन्स बने हुए हैं जहां पर बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं जिन--

जो कंप्यूटर पर अपना वर्क कर रे यहाँ पर भी बोहोत से कंप्यूटरस रखे है बोहोत से लोग यहाँ पर खड़े है जो आ जारे है।

यहाँ पर एक रथ यात्रा निकल रही है जिसमें बीच में भगवान् को बिठाया गया है और बहुत अच्छे से--

यहाँ पर बहत से टेबल्स रखे लगे है और टेबल् के सामने बहत सी चेयर लगी हुई है।

यहां पर एक नदी है और नदी में एक ब्रिज बना हुआ है यह ब्रिज पूरा लोहे का है और इसके दोनों तरफ लोहे की ही बाउंड्री की गई है।

पौधे रखे हैं जो सभी रेड कलर के गमलों में लगे हुए हैं और सामने बहुत अच्छे से सजाकर भगवान् की मूर्तियाँ र--

यहाँ पर एक शॉप है और शॉप कॉ कार्पेट्स की है यहाँ पर अलग अलग डिज़ाइन के अलग अलग कलर --

और ये जिस शॉप में रखी है ये शॉप पूरी सफ़ेद कलर से पेंट है और यहाँ पीछे कुछ पोस्टर --

और यहां पर शॉप के बाहर कुछ बड़े बड़े टायर्स रखें कुछ छोटे टायर उपर की तरफ टंगे हुए है नीचे भी बहोत सारा सामान रखा हुआ है।

और शॉप के बाहर जो मेंन गेट के फ्रंट में है वहां ग्लासेस लगे हुए हैं उसके अंदर की तरफ बहुत सारा सामान है सामने पोस्टर भी लगा हुआ है --

यहां पर एक बड़ा हाल है जो पूरा खाली है जो पूरा वाइट कलर का है यहां पर बहुत से बॉक्स रखे हुए हैं जो ब्राउन व्हाइट ब्लू --

जो पीले और कलर की है और लोहे की है यहाँ पे एक व्यक्ति खड़े हैं जो फ़ोन पर बात कर रहे हैं पीछे भी यहाँ पर बहुत सारे अन्दर की तरफ रूम हैं।

और यह पूरी ब्राउन कलर की है मिट्टी के कलर की है जो बोहोत ही अथेंटिक लग रही है।

और ये जहां रखी है वो दीवार पूरी सफेद कलर की है और एक स्टैंड पर इसे रखा गया है बहोत ही--

यहाँ पर एक रूम है और रूम में एक गेट लगा हुआ है जो लकड़ी और ग्लास का बना हुआ है।

और इसके एक चारो तरफ गोलाकार डिज़ाइन बनी हुई है जो बहुत ही सुन्दर है और यहाँ पास में ही सफ़ेद लाइट लगी है लाइट --

ऑरेंज और वाइट कलर से यह पैंट है और साइड में ही कुछ अलमारियां भी है यहां और नीचे की तरफ भी कुछ सामान रखा हुआ है सामने भी --

यहाँ पर रेड कलर का टेंट लगा हुआ है और जिसके निचे बोहोत सारे घोड़े बंधे हुए है।

आगे की तरफ दोनों तरफ बोहोत सारी कार्स खड़ी सामने भी टेंट --

यहाँ पर एक बड़ा सा घर बना हुआ है जो चर्च है जो रेड और यलो और व्हाईट कलर का है और इसकी खिड़कियाँ ब्लू कलर की हैं।

और उपर की तरस क्रोस का सिम्बोल बना है सामने की तरफ बोहोत सी जादर लगी है डेकोरेशन किया गया है।

मशीन में एक्सपेरिमेंट कर रही है मशीन निचे से ग्रीन कलर का उस पे कुछ स्टैंड रखा है।

और जो बर्तन रखा ऊपर की तरफ वोटल से इस मशीन को सेट किया गया है पूरा रूम है।

यहाँ पर एक स्टेज बना हुआ है इस स्टेज पर कुछ लोग खड़े है वहा म्यूजिक सिस्टम रखा है।

और पुल के दूसरी तरफ बहुत से पेड़ लगे हुए हैं दूर वहां कुछ व्हाईट कलर के घर भी बने हुए दिख रहे हैं सामने की तरफ।

यहाँ पर एक रेस्टोरेंट है रेस्टोरेंट के बिच में एक बड़ी टेबल रखी हुई है टेबल के चारो तरफ--

और ए_सी लगा है फेन लगा है ऊपर की तरफ भी कुछ डीजाईंन है सफ़ेद कलर की छत--

और ये पूरा मार्केट है सामने कुछ रेड कलर के बिल्डिंग भी है और यहाँ कुछ ब्लैक ब्राउन ग्रीन कलर की बिल्डिंग है।

महिलायें टोकरियों में बहुत सारा सामान लेकर आई हैं इनके पास गन्ना भी है और आसपास में कुछ पेड़ हैं खेत है।

और इसे सजाया गया है कुछ झालर लगी है कुछ बड़े पेड़ भी हैं और सामने की तरफ कुछ पूजा का सामान है।

यहाँ पर एक शॉप है जो मिठाई की शॉप है और यहाँ पर बहुत सारे कोल्ड्रिंक्स और दूसरा सामान भी रखा गया है जो--

कांच की अलमारियों में सेट करके रखा गया है इनके ऊपर कुछ बॉक्स रखे हैं वहां पे भी सामान रखा हुआ है बहुत से लोग निकल के जा भी रहे हैं।